एक व्यक्ति खड़ा हुआ पूजा करता हुआ दिखाई दे रहा है जिसने ब्लॅक अँड व्हाइट और ब्लू कलर का जीन्स पहन रखा है दिखाई दे रही है पॉलीथिन दिखाई दे रही है।

ये रेल की पटरिया दिखाई दे रही है और रोड भी दिखाई दे रहा यहा पे एक मकान दिखाई दे रहा इसके दीवार का कलर व्हाइट और पिंक है वहापे बॉउंड्री भी दिखाई दे रही है।

और एक माखान दिखाई दे रहा है जिसके दीवार का कलर रेड है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है और कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है और जमीन भी दिखाई दे रही है।